पीएचपीphpपर बुनियादी स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है यहाँ हम if statementस्टेट्मेन्ट पर चर्चा करेंगे
अगर आपके पास लिखित कोड है तो आपको if statementस्टेट्मेन्ट कि जानकारी होगी
यह पीएचपीphp में ज्यादा अलग नहीं है मैं अभी शीघ्र ही एक निष्पादित करूँगा और आपको दिखाऊँगा
तो चलिए शुरू करते हैं
ठीक है यहाँ if statementस्टेट्मेन्ट के बारे में संक्षिप्त है यह कुछ शर्त आरक्षित करता है
यदि शर्त सही है तो यह कोड के एक पाथ को निष्पादित करता है
यदि यह गलत है यह कोड के अन्य पाथ को निष्पादित करेगा
उदाहरणस्वरूप यह संरचना है
ifकोष्ठकों के अंदर शर्त यह जानने के लिए है कि 1 1 के बराबर है
ध्यान दें मैं यहाँ डबल इक्वल टू चिन्ह का उपयोग कर रहा हूँ यह कम्पेरिज़न ऑपरेटर है
दूसरे ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे
यह is equal to जैसा पढ़ा जाता है हालाँकि यह equals की तरह समान नहीं है
जब हम वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे होते हैं जब हम तुलना करना चाहते हैं डबल इक्वल टू का उपयोग करते हैं
यदि आप सही पाथ के लिए जा रहे हैं आप दो कर्ली कोष्ठकों का उपयोग कर सकते हैं
हम यहाँ एक ओपन करने जा रहे हैं
हमारा कोड कोष्ठकों के बीच में चला जायेगा
यदि यह सही नहीं है हम अन्य मान लेंगे
समान संरचना अतः दो कर्ली कोष्ठक
उदाहरणस्वरूप यदि 1 1 के बराबर है हम एको सही मानेंगे
यदि 1 1 के बराबर नहीं है तो जो हमें प्राप्त होना चाहिए वह है गलत फ़ाल्स जब हम अपनी फाइल चलाते हैं
क्योंकि 1 1 के बराबर है तो जो हमें प्राप्त होता है वह है सही true जब हम अपनी फाइल चलाते हैं
चलिए इसे बदलते हैं यदि 1 2 के बराबर है जो यह नहीं करता तब हमें गलत प्राप्त होगा
अतः हमने पहले से ही एक साधारण प्रोग्राम बनाया होगा यह बताने के लिए यदि एक संख्या दूसरी संख्या के समान है
यह प्रोग्राम के लिए एक अत्यंत नासमझ एप्लीकेशन है
इसलिए मैं कुछ और अधिक जोड़ूँगा मैं पासवर्ड ऐक्सेस के लिए एक छोटा प्रोग्राम बनाऊँगा
हम यहाँ वेरिएबल में पासवर्ड स्टोर करने जा रहे हैं
मान लीजिए पासवर्ड abc है
मैं उक्ति के द्वारा मेरे if function फलन में वेरिएबल को मिलाने जा रहा हूँ
यदि पासवर्ड दोहरे बराबर def याद रखें
और मैं मानूँगा कि ऐक्सेस स्वीकृत हो गया है
माफ कीजिए मैंने एक गलती कर दी है def पासवर्ड है जिसे हम यूजर के लिए पूछना चाहते हैं abc पासवर्ड है जिसे मैं सिस्टम में डाल रहा हूँ
इसलिए यदि यह def के बराबर नहीं हैमैं मानूँगा कि ऐक्सेस अस्वीकार हो गया है
पासवर्ड जो मैंने दिया है वह abc है
हम def की पासवर्ड से तुलना करने जा रहे हैं जो संचित पासवर्ड है
यदि यह def के बराबर है हम मानेंगे कि ऐक्सेस स्वीकृत हो गया अथवा ऐक्सेस अस्वीकृत हो गया है
चलिए कोशिश करते हैं
ऐक्सेस अस्वीकृत क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं हुये
इस आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल को मिलाया है
इसे def में बदलो और हमें ऐक्सेस स्वीकृति प्राप्त होगी
क्योंकि मेरे पास एक लाइन कोड यहाँ है और अन्य एक लाइन कोड यहाँ है
मुझे इन कर्ली कोष्ठकों से छुटकारा मिल सकता है
मेरे लिए वह काफी उत्तम दिखता है
कृपया ध्यान दें कि यहाँ कर्ली कोष्ठक जोड़ने का कोई मतलब नहीं यदि आपके पास साधारण if statementsस्टेट्मेन्ट के लिए कोड की केवल एक लाइन है इन जैसे
यदि यहाँ लाइन के बाद लाइन होगी तो आपको कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता होगी
उदाहरणस्वरूप चलिए नये वेरिएबल को यहाँ सेट करते हैं
ऐक्सेस बराबर स्वीकृतaccess equals allowed
वह कोड की केवल मूलतः अन्य लाइन है
लेकिन जब मैं इसे चलाने कि कोशिश करता हूँ और चलाता हूँ हमें एक एरर मिलती है
यह कहता है an unexpected t_else on line 8
चलिए लाइन 8 खोजते हैं यह यहाँ है इसके पहले की लाइन समस्या का कारण है
यही वजह है कि हमें कोड की दो या दो से अधिक लाइनों के लिए अपने कर्ली कोष्ठकों को वापस जोड़ने की जरूरत होती है
हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ऐक्सेस स्वीकृत है
अब मैंने एक नया वेरिएबल सेट किया है ऐक्सेस स्वीकर होगा
यह पूर्ण मदद नहीं होगी
लेकिन मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा था
आप देख सकते हैं कि यह अभी तक एक सिंगल लाइन है और यह दोहरी लाइनें हैं और आप उन्हें मिश्रित नहीं कर सकते
ठीक है मैंने एक वेरिएबल बनाया मैंने इसे एक if statement स्टेट्मेन्ट में निगमित किया उम्मीद है यह उपयोगी था
अब मैं इस ट्यूटोरिटल को समाप्त करती हूँ